जैसे की आप लोग देख रहे है की यह फोटो यह किसी टाटा मोटर्स एजेंसी वगरह का फोटो लग रहा है जहां पे यहाँ एजेंसी है। जहां से आप नए गाड़ी को खरीद सकते है । इवन आप अपना पुराना खराब गाड़ी को देके उसको भी चेंज करवा सकते हैं।

लगता है किसी नशेड़ी ने इसे अच्छी तरह से ठोका है।

जो वो पिक्चर बहुत सुन्दर है इसमे चमक बहोत है और यह व्हाइट कलर का पिक्चर है यूनिवर्सिटी लाल कलर से है जो बहोत ही सुन्दर लग रही है।